पे कुछ पोस्टर वैगरा लगे हुए है और कुछ कप वैगरा भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं नीचे एक दीवाल दिखाई दे रही --

पे नीचे रोड बना हुआ दिखाई दे रहा है और उस यहाँ पे कुछ टेबल वगेरह रखे हुए हैं ।

एक चेयर भी रखी हुई दिखाई दे रही है और एक वायर भी लगा हुआ है ।

बहोत सारी लाइटें भी जलती हुई दिखाई दे रही है।

नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।